ये पार्किंग लोड हैअ यह अपार्टमेंट के पीछे देखिए बना हुआ है इसमें कई सारे कारे खड़ी हुई है।

इसमें शॉपिंग वगैरह करतें हैं साड़ी --

ये अपार्टमेन्ट है उह अभी ये शायद बन ही रहा है अपार्टमेन्ट कलर की गयी है बाहर से ताकि देखने में अच्छा लगे ।